यह एक गणेश पंडाल की तस्वीर है यहाँ पर लोग खड़े होकर फोटो खिचवा रहे है एक मनुष्य यहा पर बैठा हुआ है।

अंदर जा रहा है यहाँ पर हरे भरे वृक्ष लगे हुए है एक झूला भी है जिसे लोग ड्रैगन के नाम से जानते है।

यहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी है सिडिया भी बनाई गई है। इस पहाड़ के उपर यहाँ पर सुविधा बहुत कराई गई है। यहाँ पर--